इस इमेज में सामने यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही हैं और नीचे यहां पर लाईन से कुछ करें खड़ी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने यहाँ पर एक एस_बी_आई बैंक दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर कुछ लोगों कि भीड़ नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग नीचे बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर पानी भरा दिखाई दे रहा है सामने यहां पर एक बड़ा सा खेत भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बस स्टैंड दिखाई दे रही है सामने यहां पर कुछ बेंचेस नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक अ वार्ड बॉय दिखाई दे रहा है उसके पास में तीन सिलेंडर भी रखे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी रखे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक किले का गेट दिखाई दे रहा है यहां पर बाहर कई मोटर साइकिल खड़ी नजर आ रही है।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

इस इमेज मे यहां पर एक मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग लाइन से खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ मछलियां दिखाई दे रही हैं और यहां पर कुछ लोग बैठे होकर उन्हें बेचते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और यहां पर एक गेट भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक मोर का चित्र बना नजर आ रहा है।